यह फोटो एक बड़ा सा घर का है।

यह फोटो एक सड़क का है सड़क के सामने एक घर है घर के बाहर एक व्यक्ति झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं।

और गेट के दीवारों में बैनर लगे हुए हैं।

और बिजली के खंभे लगे हुए हैं कईं सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप का है यहां पे कहीं सारे लाइटें जल रही हैं।

पेट्रोल पंप के अंदर कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं एक बाइक लगा हुआ है।

और कई सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई हैं।

ग्राउंड में दो बड़ी सी लाइटे जल रही है।

एक छोटा बाल्टिन है एक व्यक्ति बैठे हुआ है।

और गमले में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक स्टेशन की है स्टेशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है।

और दुकान में एक छोटी सी खिड़की भी है।

तीन व्यक्ति खड़े हैं।

ओर छोटे से टेबूल के ऊपर एक हरा कलर का मग है।

बिल्डिंग के ऊपर एक प्लस का सिंबॉल बना हुआ है।

और बिल्डिंग का कलर ग्रीन है।

बिल्डिंग के अंदर कई सारे लाइटें लगे हुए हैं।

इस यह तस्वीर एक सड़क का है सड़क के में कई सारे व्यक्ति बच्चे एवं महिलाएं दिख रही है।

एक कचड़े फेंकने के लिए डस्टबिन लगा हुआ है और बहुत सारी दुकान लगे हुए हैं।

दुकान के अंदर कई सारे लाइटे एवं पंखे लगे हुए हैं।

जो सफेद कलर का है और आगे सामने की और एक दरवाजा है।

यह फोटो एक सड़क का है सड़क में कई सारे बाईकें लगे हुए हैं बाईकों के ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और कई सारे खंभे लाइट के लगे हुए हैं और कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह फोटो एक बाथरूम का है बाथरूम के अंदर एक सफेद कलर का कमोड लगा हुआ है।

यहां पे कई सारे व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहे हैं।